जिसके ऊपर एक ध्वजा है जो लाल रंग का है.

इसको देखने से पता चलता है कि यह म्यूजिक बैंड है.

तीन व्यक्ति नीचे से प्रोग्राम देख रहे--

ऊपर में बल्ब लगे हुए हैं.

इसमें बोहोत प्रकार के होडिंग लगे हुए हैं.

एक कांच का ग्लास लगा हुआ है।

आगे आइसक्रीम का एक ठेला हे.

यह हवेल ढाबा है जिसमें एस_आई लिखा हुआ है.

सामने एलवेस्टर का छत हैं.

सामने बोहोत सारे होडिंग लगे हुए हे.

यह एक दूकान हे जिसमे बोहोत सारे सामान रखे हुए हे.

सीढ़ियों पे बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं

निचे ग्रीन कलर का कार्पेट बिछा हुआ है.

पीछे पेड़ दिख रही है।

साइड में हॉकिंस का प्रेशर कुकर रखा हुआ है.

यह एक दुकान है जिसमें लेज कुरकुरे पानी का बोतल साइड में कुर्सी और बहुत प्रकार के समान दिख रहे हैं.

ये देवघर स्टेशन हे जिसके आगे दो व्यक्ति खड़े हे.

एक खंभा है जिसके ऊपर वायरिंग तार लगा हुआ है.

सामने एक पेड़ है जिसमें हरे पत्ते हैं।

पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

सामने एक छोटा सा गेट दिख रहा है जो खुला है.

जिसके साइड में एक टावर है।

दोनों पलंग मे गद्दे लगे हुई हे उसके ऊपर मे बेरशीट हे.

आगे कुछ सामान रखीं हुई है।

ऊपर लीची बोल लगी हुई है.

इस चित्र को देखने से पता चलता है कि यह एक बड़ा पहाड़ है।

यह अवंतिका मिष्ठान भंडार हैं.

नीचे कारपेट बिछा हुआ है.

यह एक ड्राई फ्रूट शॉप है जिसमे बहुत सारे ड्राई फ्रूट रखे हुए है.

दूकान हे जिसमे सुचना लिखी हुई हे.

दो शटर लगे हुए हैं.

दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं.

गर्दन में मंगल सूत्र है.

लाल कलर की बेडशीट बिछा हुआ है.

साइड में कुछ टंगा हुआ है।